और वहां हरा भरा घना जंगल भी दिख रहा है।

मस्त आसानी से खड़ा है और वह चुपचाप से बैठें हैं।

उस ट्रक पर श्री गुरु नानक ऐसा लिखा हुआ है उसमें यह मोई--

बाजू में एक पेड़ भी नजर आ रहा है जोकि हरा भरा दि--

और बाजू में कुछ पेड़ भी नजर आ रहे--

यहां बिल्डिंगे ऊपर से दिख रही हैं वहां कुछ ए_सी भी लगे हुए हैं।